मुझे इस चित्र में एक पहाड़ दिखाई दे रहा है इस पहाड़ पर जाने के लिए--

मुझे इस चित्र में एक मार्केट दिखाई दे रहा है।

इस इमारत का दरवाजा बहुत बड़ा है इस इमारत में बहुत सारी खिड़कियां बनी हुई हैं।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

इस दुकान में कैरम बोर्ड हैंग किए हुए हैं। इस दुकान के बाहर एक आदमी खड़ा है।

मुझे इस चित्र में एक दुकान दिखाई दे रहा--